लुगाईया घनी सारी साड़ी पहर मेली है थोड़ो-थोड़ो आसमान है।

लाल कलर कि साड़ी परमेली हैं और विक लारे एक बड़ी एल.इ.डी. लाग री हैं।

पीछे एक स्क्रीन चाल री है जो वह दिख रहा हैसब पिरामिंड सा बनाता साइड में एक छोरो खड़ो है।

घंटी लगा रखी है लाल कलर कि टी शर्ट भी भी एक छोरो है बो लाल कलर कि टोपी भी लगा रखो है।